रूबी मेथड्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे मेथड क्या है160
मेथड के लिए रचनाक्रम और हम कुछ उदाहरण देखेंगे
यहाँ हमने उबन्टु लिनक्स वर्जन 1204 रूबी 193 का उपयोग किया हैं
इस ट्यूटोरियल के अनुकरण के लिए हमें लिनक्स में टर्मिनल और टेक्स्ट एडिटर का ज्ञान होना ज़रूरी है
अब मेथड्स के परिचय के साथ शुरू करते हैं
मेथड एक पृथक प्रोग्राम है जो विशेष कार्य का निष्पादन करता है
रूबी मेथड अन्य प्रोग्रामिंग भाषाओं में फंक्शन्स के बहुत समान है
मेथड नेम लोअरकेस लेटर से शुरू होना चाहिए
मेथड्स को उनकी कालिंग से पहले ही परिभाषित करना चाहिए
मेथड के लिए रचनाक्रम को देखते हैं
मेथड्स को परिभाषित करने के लिए कीवर्ड डेफ के बाद मेथड का नाम लिखें
आर्ग्यूमेंट्स मेथड्स को संसाधित करने के लिए दी गयी वैल्यूज को दर्शाता है
रूबी कोड सेक्शन मेथड को बनाने वाले ढाँचे को दर्शाता है
मेथड के ढाँचे को ऊपर से इस परिभाषा और नीचे से वर्ड इंड के द्वारा पृथक किया जाता है
यह आर्गुमेंट के साथ मेथड कहलाता है
मेथड के लिए अन्य रचनाक्रम है कीवर्ड डेफ के बाद मेथड का नाम और रिक्त आर्गुमेंट लिस्ट
रूबी कोड सेक्शन जो मेथड के ढाँचे को दर्शाता है
और वर्ड एन्ड जो मेथड के अंत को चिन्हित करता है
यह आर्गुमेंट से रहित मेथड कहलाता है
देखते हैं कि मेथड का उपयोग कैसे करें
मैंने एक प्रोग्राम गेडिट एडिटर में पहले ही टाइप कर लिया है
इसे खोलते हैं
ध्यान दें हमारी फाइल का नाम है मेथोड हाइपेन विथआउट हाइपेन आर्गुमेंट डॉट आरबी मैंने फाइल को रूबी प्रोग्राम फोल्डर में सेव किया है
इस प्रोग्राम में हम मेथड का उपयोग करके दो नंबर्स के जोड़ का आंकलन करेंगे
प्रोग्राम को अच्छी तरह देखें
यहाँ हमने एक ग्लोबल वेरिएबल आ घोषित किया है
और हमने इसकी वैल्यू 5 निर्धारित करके इसको आरम्भ किया
ग्लोबल वेरिएबल नेम्स से पहले डॉलर सिग्न लगाएं
रूबी प्रोग्राम में ग्लोबल वेरिएबल की घोषणा के स्थान के अलावा कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं
यहाँ हमने आर्ग्यूमेंट्स से रहित एक मेथड एड घोषित किया
यहाँ हम यूजर से दूसरा नंबर एंटर करने को कहते हैं
यूजर वैल्यू एंटर करेगा
गेट्स मेथड स्ट्रिंग फॉर्मेट में कंसोल से इनपुट प्राप्त करता है
हमें to i मेथड उपयोग करके इसको इन्टिजर में बदलना ज़रूरी है
बदली हुई वैल्यू फिर वेरिएबल ब में संचित होती है
ब लोकल वेरिएबल है
यह केवल उस मेथड में उपलब्ध है जिसमें यह घोषित हुआ है
यहाँ हम ग्लोबल वेरिएबल आ और वेरिएबल ब की वैल्यूज को जोड़ते हैं
उसके बाद परिणाम वेरिएबल सम में संचित हो जाता है
अब हम सुम प्रिंट करते हैं
यह स्ट्रिंग में वेरिएबल प्रविष्ट करने का तरीका दर्शाता है
इस सम का कंटेंट स्ट्रिंग की तरह प्रवेश करता है और आउटर स्ट्रिंग में जगह लेता है
एंड मेथड के अंत को दर्शाता है
यहाँ दो तरह के मेथड हैं
यूजर डिफाइंड मेथड जो हमारा एड मेथड है
प्री डिफाइंड मेथड जो है प्रिंट गेट्स और to i मेथड यहाँ हम ऐड मेथड को कॉल करते हैं
एडिशन ऑपरेशन किया जायेगा और परिणाम प्रिंट होगा
अब सेव बटन पर क्लिक करें
यह प्रोग्राम रूबी प्रोग्राम फोल्डर में सेव होगा जैसा पहले बताया है
अब प्रोग्राम का निष्पादन करें
एकसाथ Ctrl Alt और ट कीज़ दबाकर टर्मिनल खोलें
स्क्रीन पर टर्मिनल विंडो दिखती है
प्रोग्राम निष्पादन के लिए हमें सब डाइरेक्टरी रूबी प्रोग्राम में जाना है
टाइप करें सीडी स्पेस desktopरूबीप्रोग्राम और एंटर दबाएं
टाइप करें रूबी स्पेस मेथोड हाइपेन विथआउट हाइपेन आर्गुमेंट डॉट आरबी और एंटर दबाएं
Enter थे सेकंड नंबर प्रदर्शित होता है
मैं 4 वैल्यू एंटर करुँगी
टाइप 4 और एंटर दबाएं
हमें आउटपुट मिलता है sum ओएफ त्वो नंबर्स 5 एएमपी 4 इस 9 अब हम आर्ग्यूमेंट्स के साथ मेथड का एक उदहारण देखते हैं
हम इस प्रोग्राम को पहले ही गेडिट एडिटर में टाइप कर चुके हैं
इसे खोलें
ध्यान दें कि हमारा फाइलनेम मेथोड हाइपेन विथ हाइपेन आर्गुमेंट डॉट आरबी है
मैंने यह फाइल भी रूबीप्रोग्राम फोल्डर में सेव की है
प्रोग्राम को अच्छी तरह देखें
यहाँ हमने एक ऐड नामक मेथड घोषित किया
आ ब मेथड ऐड के आर्गुमेंट हैं
यहाँ आ और ब वैल्यूज जुड़ती हैं
और सम मेथड कॉल में वापस प्रवेश करता है
एंड मेथड के अंत को दर्शाता है
यहाँ हम यूजर से इनपुट के लिए पूछ रहे हैं
यूजर आ और ब की वैल्यूज एंटर करेगा
वैल्यूज क्रमशः वेरिएबल आ और ब में संचित की जाएँगी
यहाँ हम मेथड एड कॉल करते हैं
हम आर्गुमेंट में आ और ब रखते हैं
एडिशन ऑपरेशन होने के बाद मेथड एड का परिणाम सी में संचित किया जाता है
यहाँ हम सम प्रिंट करते हैं जो सी में संचित है
इस कोड को निष्पादित करें
टर्मिनल पर जाएँ
सबसे पहले टर्मिनल क्लियर करें
टाइप करें क्लियर और एंटर दबाएं
हम पहले से ही सब डाइरेक्टरी रूबीप्रोग्राम में हैं
पिछली कमांड में जाने के लिए अप एरो की दो बार दबाएं
मेथोड हाइपेन विथआउट हाइपेन आर्गुमेंट्स डॉट आरबी को मेथोड हाइपेन विथ हाइपेन आर्गुमेंट्स डॉट आरबी के साथ बदलें
और एंटर दबाएं
Enter थे वैल्यूज ओएफ आ एंड ब प्रदर्शित होता है
मैं 8 और 9 एंटर करुँगी
टाइप करें 8 और एंटर दबाएं
टाइप करें 9 और एंटर दबाएं
हमें आउटपुट मिलता है
सुम ओएफ त्वो नंबर्स 8 एएमपी 9 इस 17
अब मैं रूबी मेथड की एक महत्वपूर्ण विशेषता बताऊँगी
टेक्स्ट एडिटर में प्रोग्राम पर वापस आते हैं
कीवर्ड रिटर्न को डिलीट करें
अब सेव बटन पर क्लिक करें
कोड को निष्पादित करें
टर्मिनल पर जाएँ
पिछली कमांड में जाने के लिए अप एरो की दबाएं और एंटर दबाएं
प्रदर्शित वैल्यूज आ और ब एंटर करें
मैं 10 और 15 एंटर करुँगी
10 टाइप करें एंटर दबाएं 15 टाइप करें और एंटर दबाएं
हमें आउटपुट मिलता है
सुम ओएफ त्वो नंबर्स 10 एएमपी 15 इस 25 हम देख सकते हैं कि कीवर्ड रिटर्न डिलीट करने के बाद भी प्रोग्राम बिना किसी एरर के निष्पादित हुआ है
ऐसा इसलिए है क्योंकि रूबी अपने आप से मेथड में संसाधित वैल्यू को रिटर्न करता है
रूबी में मेथड में कीवर्ड रिटर्न ऑप्शनल होता है
इसके साथ हम स्पोकन ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं
अपनी स्लाइड्स पर वापस आते हैं
इसको सरांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा मेथड्स के बारे में
आर्गुमेंट के बिना मेथड्स के लिए रचनाक्रम
और मेथड्स आर्ग्यूमेंट्स के साथ
मेथड से वैल्यू रिटर्न करना
नियत कार्य के रूप में
मेथड का उपयोग करके और यूजर से इनपुट लेकर वर्ग के क्षेत्रफल की गणना के लिए एक प्रोग्राम लिखें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
अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम160 स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएं चलती है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
इस मिशन पर अधिक जानकारी दिए लिंक पर उपलब्ध है
आई आई टी मुंबई से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद